उसमें कई सारी किताबें नज़र आ रही है।

दो लाल रंग के रिंग एक पीले रंग का रिंग और एक हरे रंग का रिंग नज़र आ रहा है जिसमे से पानी निकलता हुआ दिख रहा है ।

आसमान नज़र आ रहा है।

एक छोटा तालाब नजर आ रहा है।

नाव पर दो आदमी नज़र आ रहे हैं।

कई सारे लोग नजर आ रहे हैं।

लाइट दिखाई दे रही है।

पीछे कई सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं।

एक नीले रंग का भवन नजर आ रहा है जिस पर पी.एम. मिश्रा कॉलेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दो आदमी नज़र आ रहें हैं।

ऊपर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है।

खम्भा नजर आ रहा है जिसके बोर्ड पर एस.एच.सी. लिखा हुआ नजर आ रहा है।

अनुभवी डॉक्टरों से परामर्श अपने ही क्षेत्र में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

रेल की पटरियां नजर आ रही हैं।

में हल्का सा पानी नजर आ रहा है।